ऊपर नीला नीला आसमान है नली नदी बिलकुल नीली नीली दिखाई दे रही है सुखी सुखी घास भी यहाँ --

ये या तो एक नदी हो सकती है या एक तालाब जैसे पर बहुत बड़ा है तो शायद नदी भी हो सकती है।

मकान है जहाँ पर वो काम करते--

ये एक शिव मंदिर है जहाँ पर शिव जी की मूर्ति है।

ऊपर कलश लगा हुआ है कलश से बम पानी गिर रहा है और आसपास छोटी छोटी और मूर्तियाँ है।

यह स्कूल का फोटो है जहाँ पे सभी बच्चें बैठे हुए स्कूल ड्रेस में है कुछ कलरफूल ड्रेस में भी है।

यह एक ऊंची वाली चटान है जोकि हरी हरी दिखाई दे रही है।

ये किसी प्रकार की पिरामिड नज़र आ रही है जोकि ऐसे अह लम्बी सी है और अलग अलग प्रकार की है।